यह एक यहां पे वाटरफॉल है पानी का कलर वाइट है नीचे ग्रीन हो रहा है।

ने बहुत सारे यहां पे बड़े-बड़े बिल्डिंगा देख रहे हैं।

सब को यहां पे फूल का हार डाला गया है यहां पे टूलर गाड़ियां है बाजू में---

ये एक यहां पे पौधों की दुकान है। यहां पे हर कसम के पौधे मिलते हैं।

ये एक यहां पे खुला मैदान दिख रहा हैऔर यहां पे सामने एक घर दिख रहा है।

गाड़ियां दिख रही है और बड़ी सी यहां पे बिल्डिंग भी है और यहां पे बड़े-बड़े झाड़ा भी है।

बड़ा सा एक बैरल भी रखा हुआ है और यहां पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं।